और नीचे सीमेंट बिखरा हुआ है।

एक नर्स है और एक डॉक्टर है वो लोग कुछ कर रहे हैं एक बेड के पास और सारे पर्दे खुले हुए हैं।